यहाँ एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर बहुत बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर हैं।

बहुत ही ऊंचाई है मंदिर का लगभग --

बड़े-बड़े हार चढ़ाऐ गए है और पीछे बहुत अच्छा फूलो से सजाया गया है बहुत सुंदर लग रही हैं।

यहाँ बड़े वाला तीन ठो झूला दिख रहा है और बहुत सारे दुकान -उकान लगे हुए हैं।

पानी में डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहा है और साइड में बच्चा खड़ा हुआ हैं।

जो बड़े-बड़े है और इसे एक बर्तन में लिया गया हैं।